पे जो है यहाँ पे बहोत सारा ड्रेस व्रेस लगा हुआ है कंबल वगैरा है ।

एक अकल आ रहे हैं और गार्डन में घुमने जा --

पे जो है बहुत सारे बॉक्स मे पहले ही बहुत कुछ है यहाँ पे स्काई कलर का बहुत सारा बिल्डिंग है बहुत कुछ है दिखने मे बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है बहुत क्यूट है बहुत ही मस्त है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है |

अ यहाँ पे जो एयरटेल फोर जी लिखा हुआ है जहाँ पे किया गया है और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे बिल का भी रिचार्ज गेट लिखा हुआ है जहाँ पे पोस्टिंग वगेरह दिया हुआ है और सबसे मेन है कि यहाँ का जिम भी बहुत सुंदर लग रहा है बहुत रात का टाइम में और अच्छा भी दिख रहा है और देखने में बहुत ज़्यादा सुदंर है ।